मंदिर के पास दान का एक पेटी है जिसमें पैसे बहुत सारे होते हैं मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है देखने में --